यहां पे बेंच भी दिख रहा है जिसका रंग रेड और ब्लू है।

यह एक मैदान का दृश्य है जहां पर एक मंदिर एवं दो बच्चे दिख रहे हैं।

उसपे कुछ रखा गया है जो की हरा और वाइट कलर का है।

कुछ लोहे भी दिख रही हैं और पावर हाउस के अंदर कुछ घासे भी दिख रही है।

यहां पर बहुत सारे फूल भी दिख रहे हैं और घासें भी दिख रहे --

यहां पर एक वाइट कलर का पर्दा भी दिख रहा है।

यहाँ पर रेड कलर के शीशे को रंग किया गया है।

बहुत सारे आदमी भी दिख रहे हैं और शाम का वक्त हो रहा है यहां पर बहुत सारे खंभे भी हैं।

यहां पर बहुत सारे तिरपाल भी लगा हुआ है जिसका रंग पीला व्हाइट और बहुत रंग का भी है।

यहां पर प्लाई के मदद से दरवाजा बनाया गया है जिसका रंग भूरा कलर का है और यहां पर ए_सी भी लगाया गया है।

यह एक रूम का दृश्य है यहां पर बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं।

उसमें श्री सोमेश्वर सर्विस लिखा हुआ है।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

यह एक चर्च घर का अंदर का दृश्य है जहां पर बहुत सारे आदमी आए हुए है।

बिरंगे को कपड़े पहने गए हैं और हाथ में गिटार लिए बैठे हुए एक आदमी के मुंह पर ब्लर किया गया है।

यहां पर बहुत सारे आदमी भी दिख रही है और यहां पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

उधर में बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।